और इसमें मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कुछ प्रशिक्षुक लोग बैठे हुए है और इनके प्रशिक्षक किसी मुद्दे पर इन लोगो को समझा रहे हैं।

ये फील्ड जो मैं देख रहा हूँ।

यहाँ कई लोग लाइन में लगे हुए है। यहाँ बैंकिंग सेवा दी जा रही है और हम जानते है की एस.बी.आई. भारत की सबसे बड़ी बैंकिंग सेवा है।

मंदिर की तस्वीर है। इसमें दो --

अच्छा है यहाँ पर बिदेशी सामान भी सस्ती कीमतों में मिल जाता --